फिर इधर रिक्शा है इधर एत्ठो बैग --

नीचे में पानी है पानी मतलब बहुत अच्छा पानी है तो अच्छा लग रहा है यार।

सलाई का जो काठी नही रहता है तिल्ली उसी से पूरा सजाये हुए है ऊप --

नारियल के जैसे और आगे से कुछ-कुछ की सब तरह की पौध --

सब चीज है बहुत चीज है मतलब इसमें आपको मिल सकता है एक ठो दुकानदार है।

का कप आ रेड कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहने हुए है जिसमे उस--

पान है पूरे और इधर पूरा पानी है पानी --

जा बहुत अच्छा लग रहा है एक ठो इंसान है वो रेड कलर के कपड़ा पहने पहने--

कपड़ा बैट उट मोल में तो जानवे करते हैं बहुत तरह के सामान है फ्रिज है कूलर है हीटर --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

हवेली है दो ठो बेड लगा हुआ है इधर पूरा झरना है।

जो लेडिस है उसका एकठो मतलब बच्चा है उस उसके हाथ में --

जो आप यूज करते है सब इसमे मिल सकता है और मू--

जीवित रखने के लिए इसमें बीज डाल रहे हैं इसमे दो ठो इंसान --

रहा हैं सब मैच खेल रहे हैं इधर --

इधर बैट चेक एक आदमी इधर बो एक ठो बोलिंग कर रहा --